जैसे की हम देख पा रहे है यह एक बेकरी की शॉप है और काफी सारा अ अ देखने को मिल रहा है यहा पे डेली सामान जो यूज़ मैं होता है वो सारी चीजे यहा पे उपलब्ध है।

शेल्फ लगा हुआ है और यह एक हलके पिंक रंग और कथ्थई कलर से पुता हुआ है।

जो की मजदूरी अपने मजदुर हिसाब से काम कर रहे है देखने से पता चल रहा है।